यहां पर एक रेलिंग दिख रहा है।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

तार दिख रहा है रेन दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

बगल में भी बहुत सारा गद्दा दिख रहा है।

स्टैचू भी दिख रहा है और उसके बगल में पौधे भी दिख रहे हैं और पत्थल भी दिख रहा--

तेल का जो डब्बा रहता है वो भी दी दिख रहा है और कार्टून भी दिख रहा है।

अह रेल्वे स्टेस रेल अथि पटरी का जो टुकड़ा रहता है वो भी दिख रहा है।

एक गेट भी दिख रहा है ताला भी दिख रहा है।

सोफा भी दिख रहा है और बोर्ड भी दिख रहा है।

ए_सी दिख रहा है और कुर्सी दिख रहा है।

बत्ती भी दिख रहा है।

यहा पर बहुत सारे लोग दिख रहे है और बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं।

और बैलून वगैरा भी दिख रहा हैं और बहुत सारा कुर्सी भी दिख रहा है।

रेलिंग भी दिख रहा है और बहुत सारे लाइट भी दिख रहे हैं।

दो आदमी दिख रहे हैं और एक गाय भी दिख रहा है।

यहां पर दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बैलून दिख रहे हैं और ए_सी भी दिख रहा है।

कुर्सी भी दिख रहा है और पौधे भी दिख रहे हैं और बाहर में एक पिकअप भी दिख रहा--

और यहां पर बर्फ जमा हुआ है।